अ पारस डेन्टल केयर दांत एवं मुह रोग विशेषज्ञ ये दांतों का भी बहुत अच्छी तरह से दांत स्पेशलिस्ट भी जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है।